दुकान के सामने तीन स्कूटर पार्क किया हुआ है।

पास के बिल्डिंग में बाटा का एक बहोत बड़ा साइन लगा हुआ है।

ये लड़का एक झूलने में झूल रहा है।

ट्रक के आगे बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर एक जेरॉक्स मशीन भी है।

दीवार में बहुत सारा ब्लू एंड व्हाइट कलर का बैलून टंगा हुआ है।

बाथरूम में एक गीजर भी लगाया हुआ है।

यहां पे एक आदमी को भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक मैनेजर का केबिन भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे पेंट्स का दुकान भी दिखाई दे रहा है।

उनके अंदर का कलर व्हाइट एंड ग्रे कलर से किया गया है।